इस चित्र में हम बुत्ता टूरिस्ट का देख सकते हैं और ये गोल्ड की से गोल्ड से बना हुआ है। ये सारे पोड पौधे हैं।

यह एक मैंकेनिक शेड है।

इस चित्र में हम एक चर्च देखते हैं। इसमें जीसस होते हैं।